पंडित ने भगवा वस्त्र धारण कर रखा है।

मगरमच्छ के पास एक पानी का कुंड है।

एवं ब्लू कलर की कारपेट है मिरर नजर आ रहे है पंखे दिखाई दे रहे हे।

एक छोटा सा पानी का प्याओ बना हुआ है एक कुर्सी नजर आ रही है आसपास कई इमारत दिखाई दे रही है।

फोटो में हमें एक शादी के रिसेप्शन का स्टेज दिखाई दे रहा है।

आसपास हरे भरे पेड़ पौधे तथा पहाड़ी नजर आ रही है। एक नदी दिखाई दे रही है। सड़क दिख रही--

एक ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल नजर आ रही है।

लाइट्स ऑन है यह दृश्य रात्रि का है बिजली का खंभा नजर आ रहा --

मंदिर का नाम है श्री धारेश्वर महादेव मंदिर।

आस पास बड़ी बड़ी चट्टाने है पहाड़ी नजर आ रही है हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति ड्रम्स बजा रहा है।

विद्यालय के बाहर मोटरसाइकिलस दिख रही है।

यहां पर बहोत सारे बच्चे डांस सिख रहे है एक--

फोटो में हमें एक सैलून नजर आ रहा है।

सैलून का नाम है बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून सैलून के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

आदमी ने सफेद कलर की टी शर्ट तथा ब्लू जींस पेहनी है।

आसपास हरे भरे वृक्ष दिख रहे है।

एक बुक शेल्फ नजर आ रहा है।

फोटो में हमें एक प्राकृतिक दृश्य नजर आ रहा है।

शोरूम नजर आ रहा है यह एक ऑटोरिक्शा शोरूम है।

फोटो में हमें एक लकड़ी का कारखाना नजर आ रहा है।

कारखाने में हमें बहोत सारे लकड़िया नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें एक मेन रोड नजर आ रहा है।

रोड के आस पास कई सारी दुकान है।